और सामने में गाड़ी लोग पार्क किया हुआ है।

पीछे में मिट्टी दिखाई दे रहे।

और शीशा का सामने में फ्लावर पॉट लाइन से रखा हुआ है।

बेसिन दिखाई दे रहे हैं और उसमें हैंड वाश रखा हुआ है।

पियानो बैग दिखाई दे रहे हैं और पियानो रखा हुआ है बैग में--

साइड में एक बाइक प्लास्टिक से ढक के है और उसका ऊपर में एक कपड़ा है।

एक आदमी नीचे में बैठा हुआ है और पीछे में एक घर है।

छः लोग डांस कर रहे हैं और वो लोग फ्रॉक पहन के डांस कर रहे है।

दो लड़कियां सेल्फी ले रही है।

इनके पीछे साउंड बॉक्स हैं और साउंड बॉक्स के ऊपर बैलून रखा गया है।

बड़ा सा बिल्डिंग दिखाई दे रहे और वहां में लिखा हुआ स्कॉलर्स इंस्टीट्यूट ।

मिकी माउस खुला दिखाई दे रहा है और साइड में ग्रीन वाइट कलर का बैलून --

व्हाइट बैलून बार में लगाया हुआ है और--

बनाना दिखाई दे रहे और कोकोनट --

दो आदमी बॉक्स को उठा के गाड़ी में डाल रहे हैं।

में एक रैड बाइट दिखाई दे रहे हैं और लेफ्ट साइड में स्कूटी पीछे में एक दिखाई दे रहे --

छोटा छोटा एज विटामिन्स दिखाई दे रहे हैं।

पेड़ दिखाई दे रहा पीछे में।

बीच में एक टावर में कुर्सी दिखाई दे रहे और उसका ऊपर में सिम कार्ड लिखा हुआ है।